बच्चे पढने आते हैं और वह सुभे में --

उतरी हुई है जिससे इसकी हड्डी आ जाएगी और यह व्यक्ति --

उसी की तरफ देता है जिसकी तरफ बॉल गिरती है। उस पर पॉइंट चले जाता है और पॉइंट चढ़ने से --